यहाँ पर एक बेड दिखाई दे रहा है। बेड के ऊपर एक तकिया लगा हुआ है। तकिया के ऊपर एक आदमी उल्टा लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ग्रीन कलर की चादर बिछी हुई है।

दीवार दिखाई दे रही है दीवार पे अ एक ब्लू कलर का अ बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिस के ऊपर कागज़ के उ बने हुए हैकाफी सारे क्राफ्ट दिखाई दे रहे है जो काफी सुन्दर लग रहें हैं।

ये एक पार्क है जहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं|यहाँ पर बहुत सारे स्लाइड दिखाई दे रही हैं जिसमे बहुत सारे बच्चे इस स्लाइड पे झुलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें लाइट जल रही है यहां बहुत सारे लोग खड़े हुए दिख रहे हैं। काफी सारी सजावट की हुई हैं। काफी सारे फूल लों की लड़ियां दिखाई दे रही हैं।

कुछ गोल्डन कलर के पेड़ बने दिखाई दे रहे है जो काफी सुन्दर लग रहे है| यहाँ पर बड़े बड़े फूल दिखाई दे रहे है।

ये एक घर है जिसके बॉक्स बना हुआ है जो रेड कलर का है। घर के अंदर एक स्टूल डला हुआ है स्टूल के पास एक आदमी खड़ा हुआ है। घर का गेट जाल का बना हुआ जो ब्लैक कलर का है।